यहा पर स्टेज दिख रहा है स्टेज पर दुर्गा माता गणेश भगवान कार्तिक का मूर्ति लगा हुआ है।

मूर्ति के सामने चार महिला खड़ी है जो व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई हैं।

पहल हमलावर व्यक्ति खड़ा है और व्हाइट सूट पहने एक महिला भी खड़ी है।

टेबल के किनारे चेयर पर कुछ लोग बैठे है।

हॉल के दीवार में लोहे खिड़की लगी हुई है।

और दीवार के नीचे पिंक कलर का है।

एक हॉल है हॉल मै कुछ चेयर लगे हुए हैं जिस पर कुछ लोग बैठे हैं।

मकान के बाहर कुछ लोग खड़े है।